और फ्लोर पे छोटी छोटी हरी घास आ रही है।

और ऊपर छत पे कुछ लाइटिंग दिख रही हैं लाइटिंग बहुत सुंदर हैं।

यह एक ऑफिस है इस ऑफिस में एक टेबल है टेबल पर--

या ने म्यूजिको अ मूजिशियम हैं जहां प म्यूजिक की दुकान हैं यहाँ पर दो इस्पीकर और--

यह एक मिथला बुक सेंटर है यहां पर उसके उसके बाहर एक--

पट्टी पड़ी हुई है यहां पर एक फावड़ा भी पड़ा हुआ है लोहे की सरियां ऊपर की तरफ खड़ी हुई हैं।

अ एक बैनर लगा हुआ है जिस पर कार्टून बना हुआ है और चारों तरफ बैलून लगे हुए है रंग बिरंगे।

एस_बी_आई ए_टी_एम का बोर्ड लगा हुआ है एक उसके बाहर--

ये एक ऐसी जगह है जहां पर लोग काफी सारे लेडिज है।

एक जन डी_जे पे लटका हुआ है एक उसके दो जेंट्स ऊपर हैं।

एक येलो कलर का है उसपे की फ्लावर है उसपे ग्रीन कलर की पत्तियां है।

एक रोड है रोड पर काफी सारी बस आती जाती हुई दिखाई दे रही हैं।

और रोड पे एक सीमेंट के अंदर--

कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं फ्रेंड्स भी हैं कुछ ऊपर की तरफ खड़े हुए--

एक पिंक कलर का फ्लॉवर है पेड़ पौधे भी है और ग्रिल लगी हुई है स्टील की।

और उसके सामने एक शीशा है अह शीशा है।